यहाँ पर नदी है यहाँ पर बहोत सारी औरते यहाँ नदी में है।

यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है दिखने से यहाँ सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग नज़र आ रहा है।

बिल्डिंगे दिख रही हैं जो की ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोजेक्ट है जो कि बनाया गया है।